और बादल भी दिख रहे हैं जो बहोत ही सारे हैं।

वो भी कम रेंज में आज कल वीवो के फोन बहुत ही कम रेंज में मिल रहे हैं।

इसमें गंगा के ही डब्लू_सी और गंगा की ही वॉश बेसिन लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक कपल है उसके साथ और भी कोई जोड़ीदार है फोटो खींचा --

जहां से उसे फोटो कॉपी का--

यह जो पार्क है यह बहोत ही बड़ा दिख रहा है देख सकते हो --

और यह हॉस्पिटल नहीं यह बहुत ही अच्छा एक लोगों के उपचार का केंद्र है।

जो कि बहुत पुरानी सिटी है यहां लोग पता नहीं किस तरह रह लेते हैं।

जिसमें आप देख सकते हैं कि नीचे गणेश भगवान है और उनके ऊपर शिव भगवान विराजमान है सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है।

इसमें बहुत ही ग्रीनरी दिखाई दे रही है और--